जिसमें बहुत सारे लोग तेल भराने आए हुए हैं।

यह एक कॉलोनी है जहां पर बहोत सारा अपार्टमेंट है।

यहां पर बहुत सारे गमले हैं जिसमें पौधे भी लगे हुए हैं।

इसमें पेड़ पौधे भी विभिन्न प्रकार के भी लगे हुए है।

एक नीचे दीया भी रखा हुआ है।

इनमें लाइट भी लगी हुई है।

और मूर्ति के पीछे कुछ लिखा हुआ है।

वहां पर बहोत सारे गमले भी रखे हुए हैं।

यह एक मॉल है जिसमें कई ईस्केटर भी लगे हुए--

यहां दुकानों के सामने अपने अपने ब्रांड का फोटो भी लगा हुआ है।

यह एक क्लब है जिसका नाम मोहम्मद बे क्लब एल_टी_डी है।

क्लब के नीचे एक आदमी भी खड़ा है।

मैरेज हॉल के भीतर टेबल कुर्सी भी लगी हुई है।

दिल के बाहर कुछ आदमी लोग खड़े भी दि--

यह शॉप बहोत ही खूबसूरत और छोटे हैं।

यह एक पार्क है जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और फूल लगे हुए हैं।

यहां पर सामने एक पोल है जिसमें तसफर्मा भी लगा हुआ है।

पार्क के पास एक बाउंड्री भी दिया हुआ है।

सामने कुछ सीढ़ियां बनी हुई है।

यह एक शटल से घिरा हुआ है।

कई टेबल और कुर्सी भी लगे हुए है।

यह एक मंदिर है जिसमें मूर्ति रखी हुई ह--

के बाहर में भी रखा हुआ है।

जिस पर एक फोटो भी रखी हुई है।

यहां पे टेबुल और कुर्सी भी लगी हुई है जिसमें बहोत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

स्टूडेंट के सामने एक घड़ी भी लगी हुई है और सामने ए_सी भी लगी हुई--

पंखा भी लगा हुआ है और कुछ दीवाल पर विभिन्न तरह के फोटो भी लगे हुए हैं।

सामने गेट भी है उसके सामने एक खिड़की भी है जिसमें पर्दा भी लगा हुआ है।

इसके सामने सीढ़ियां भी है।

यह एक ऑफिस का चैंबर है।

यहां दो पहिया वाहन का सर्विसिंग सेंटर है।

इस पे बाइक सर्विसिंग करने के लिए एक प्लेटफार्म बना हुआ है।

सामने एक सीढ़ी भी दिखाई दे रही है।

और कुछ आदमी जो मंदिल के दीवाल पे बैठे हुए हैं।

स्टेशन के ऊपर टीना का शेड भी बना हुआ है।

गौशाला के बाहर एक ठेला भी लगा हुआ है।

यह एक आइसक्रीम का दुकान है यहां बहोत सारे लोग जो आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे--

यहां एक दीवाल पे गुरु जी का तस्वीर भी लगा हुआ--

और एक लकड़ी का पढ़ाई करने हेतु एक टेबुल भी रखा हुआ है।

और एक लैपटॉप बंद है टेबुल पर दो मोबाइल फोन भी रखा हुआ है।

और यहां पे तीन अध्यापिका भी खड़े हुए हैं।

और दीवाल पर कुछ ही सुंदर सा लिखा हुआ है।

कार्यालय के भीतर कुछ लेडीज़ और जेंट्स खड़े दिखाई दे रहे हैं और कुछ गेट के बाहर खड़े हैं।

यहां कार्यालय के बाहर पेड़ भी लगा हुआ है।

सामने एक गेट भी है जो खुला है।